कई पर्पल घर है। यहाँ पर काफी सारे बाइके साइकिल्स है।

डांस किया जा रहा है एक लड़की और पांच लड़के है।

ये है लड़की सरस्वती माता --